दीवार है उसके साइड में काफी लोग खड़े हैं और वहां पे माइक भी लगे हुए हैं और रंग बिरंगी लाइटें भी जस री है।

और उसके ऊपर एक टाइपिंग का मीटर रखा हुआ है।

दो लड़के खड़े हुए हैं और एक आइस क्रीम खाने इसके अंदर तीन तरह की है एक येलो एक पिंक और एक चम्मच--